उसपे हल्के सफेद बादल है और यहां पे एक और जे_सी_बी दिखाई दे रहा है।

यहां पे खुला आसमान है और उसपे अ बादल नजर आ रहे हैं।

है रेड कलर की और कोने में एक मोमेंटम है।

इसमें लाइटे लगी हुई है और रेड कलर से हैवेल्स लिखा गया है।

यहां दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है अ उसमें एक कपल को रिप्रेजेंट किया गया है।

ये उसके पिछले वाला साइड दिखाई दे रहा है।

दीवार पे कुछ लिखा हुआ है और यहां पे सड़क है।

यहां से भी एक बोर्ड है और ताला लगा हुआ है ऊपर।

ये यहां पे यह बाइक्स के नंबर प्लेट्स हैं औ--

दीवार पे कोई अह नोटिस लाइन लगी हुई है।

यहां पे एक बिल्डिंग है और यहां पे एक--

वहां पे स्लाइडस और स्लोपस और स्टेयर्स हैं।

फैन भी लगे हुए हैं और यहां पे एक आदमी ने बैग पकड़ा हुआ है अपने पीछे।

बलूंस है व्हाइट ऑरेंज और येलो कलर के।

ये सड़क है और यहां पे एक पार्क साइड में है और यहां पे एक बिल्डिंग भी है।

के सामने एक सांचा है यह उसमें रेत भर रहा है।

वहां पे कुछ सामान डिब्बे वगैरा है और यहां पे भी गमले हैं। गा --

इसके पीछे एक बड़ी दीवाल है उसपे ए_सी_सी लिखा है।

उपर कुछ झंडे लहराए गए हैं जोकि रेड ब्लू और येलो कलर की है।

ये एक बिल्डिंग है और इसके ये इसका बाहर का लुक है।

के राइट साइड से कुछ क्रेटस दिखाई दे रहे हैं।

इसपे विशाल विश्वास फोर थ्री फाइव लिखा गया है।

उनके पीछे कुछ दर्शक है वो चेयर्स पर बैठे हुए हैं।